इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे
एक सबफॉर्म बनाएँ
इसके लिए अपने परिचित उदाहरण लाइब्रेरी डेटाबेस के साथ शुरुआत करते हैं
और निम्न उदाहरणों को समझेंगे कैसे हम लाइब्रेरी के सभी सदस्यों को सूचीबद्ध कर सकते हैं
और प्रत्येक सदस्य के लिए कैसे हम केवल उन पुस्तकों को देख सकते हैं जो उस सदस्य ने वापस नहीं की हैं
एक तरीका है कि एक फॉर्म बनाएँ जो लाइब्रेरी के सभी सदस्यों को सूचीबद्ध करे
और फिर उसके नीचे एक सबफॉर्म बनाइए जो उन पुस्तकों को सूचीबद्ध करे जो सदस्य द्वारा वापस नहीं की गयी हैं
एक बार जब हम यह फॉर्म बना लेंगे हम फॉर्म में नवीनीकरण करने के लिए सक्षम हो जाएँगे
उदाहरणस्वरुपजब एक सदस्य एक पुस्तक वापस करता है हम इस सूचना का नवीनीकरण कर सकते हैं
और यहाँ फॉर्म का सैम्पल स्क्रीनशॉट है जिसे हम बनाएँगे
ध्यान दीजिये यह साथ ही नीचे एक सबफॉर्म दर्शा रहा है
अपनी लाइब्रेरी डेटाबेस खोलते हैं
अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने हिस्टोरी ओएफ बुक्स इश्यूड टो मेंबर्स क्वेरी बनाई थी
अब हम इस क्वेरी और मेम्बर्स टेबल को अपना नया फॉर्म बनाने के लिए बुनियाद की तरह इस्तेमाल करेंगे
पहले इस क्वेरी को क्वेरी नामे पर दायाँ क्लिक करके कॉपी करते हैं और पस्ते पर क्लिक करते हैं
क्वेरी नाम के लिए पॉपअप विंडो में एक नया नाम टाइप करते हैं बुक्स नोट रिटर्न्ड बुक्स नोट रिटर्न्ड क्वेरी को एडिट मोड में खोलते हैं
क्वेरी डिजाइन विंडो में चलिए एक मापदंड जोड़ते हैं केवल उन पुस्तकों को दर्शाने के लिए जो चेक्ड इन नहीं हैं
इसके लिए चेकडिन के अंदर क्राइटेरियन कॉलम में इक्वल्स 0 टाइप करते हैं
और Enter दबाइए
अब क्वेरी सेव करते हैं और विंडो बंद करते हैं
मुख्य बसे विंडो में चलिए बाएँ पैनल पर फॉर्म्स आइकन पर क्लिक करते हैं
और फिर उसे विजार्ड टो क्रिएट फॉर्म विकल्प पर क्लिक करें
अब हम परिचित फॉर्म विजार्ड देखते हैं
अपने फॉर्म की बायीं तरफ 8 स्टेप्स को शुरू से अंत तक देखते हैं
पहले स्टेप 1 में फील्ड सिलेक्शन चलिए Table मेंबर्स चुनते हैं
फिर सारी फील्ड्स को दायीं तरफ खिसका देते हैं
और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं
हम स्टेप 2 सेटअप आ सबफार्म पर हैं
अतः यहाँ एड सबफार्म चेकबॉक्स को चेक करते हैं
और विकल्प सबफार्म बेस्ड ओन मैनुअल सिलेक्शन ओएफ फील्ड्स पर क्लिक करिये
चलिए स्टेप 3 एड सबफार्म फील्ड्स पर जाते हैं
यहाँ हम अपनी क्वेरी को लायेंगे जिसे हमने कुछ समय पहले बनाया था
अतः टेबल्स या क्वेरीज ड्रॉपडाउन में से Query बुक्स नोट रिटर्न्ड चुनते हैं
और हम उपलब्ध सूची में से चुनित फील्ड्स को दायीं तरफ खिसका देंगे जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है
नेक्स्ट पर क्लिक करिये
स्टेप 4
गेट जॉइंड फील्ड्स
यहाँ हम ऊपर के दो ड्रॉपडाउनों में से मेम्बेरिड फील्ड चुनेंगे क्योंकि केवल यही सम्बन्धित फील्ड है
और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिये
स्टेप 5
अरेंज कंट्रोल्स यहाँ हम दोनों के लिए फॉर्म और सबफार्म के लिए तीसरा विकल्प डाटाशीट चुनेंगे
और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिये
स्टेप 6
सेट दाता एंट्री
यहाँ हम विकल्पों को वैसे ही छोड़ देंगे जैसे वो हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करिये
स्टेप 7
एप्ली स्टाइल्स
चलिए फॉर्म बैकग्राउंडपृष्ठभूमि के लिए ग्रे चुनते हैं
और आखिरी स्टेप में जाते हैं
स्टेप 8
सेट नामे
यहाँ अपने फॉर्म को एक विवरणात्मक नाम देते हैं मेंबर्स व्हो नीड टो रिटर्न बुक्स और मॉडिफाई फॉर्म विकल्प पर क्लिक करते हैं क्योंकि हम कुछ और बदलाव करेंगे
अब फिनिश बटन पर क्लिक करते हैं
फॉर्म डिजाइन विंडो में ध्यान दीजिये कि यहाँ दो सारणीबद्ध क्षेत्र हैं
जो ऊपर है उसे फॉर्म बोलते हैं और जो नीचे है उसे सबफार्म बोलते हैं
अब फॉर्म के ऊपर एक लेबल जोड़ते हैं
हम फॉर्म कंट्रोल टूलबार्स में लाबेल आइकन पर क्लिक करेंगे और उसको फॉर्म पर बनाएँगे
लेबल पर डबल क्लिक करने से यह उसकी प्रॉपर्टीज को ऊपर लाएगा
यहाँ हम लाबेल के सामने मेंबर्स ओएफ थे लाइब्रेरी टाइप करेंगे
और फ़ॉन्ट स्टाइल को एरियल में बदलेंगे बोल्ड और साइज 12
उसी प्रकार से सबफॉर्म के ऊपर एक दूसरा लेबल जोड़ते हैं जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है
और इसको बोलिए लिस्ट ओएफ बुक्स टो बीई रिटर्न्ड बाय थे मेंबर अब फॉर्म की लम्बाई छोटी करते हैं जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है
और फिर फॉर्म में नामे फील्ड की लम्बाई बढ़ाते हैं
उसी प्रकार से सबफॉर्म में बुक टाइटल फील्ड की लम्बाई बढ़ाते हैं
फ़ॉन्ट को यहाँ एरियल बोल्ड और साइज 8 में बदलते हैं
और फॉर्म के लिए पृष्ठभूमि रंगबैकग्राउंड कलर को सफेद में और सबफार्म के लिए ब्लू 8 में बदलिए
आगे इस पर दायाँ क्लिक करके मेम्बेरिड कॉलम को छिपा देते हैं और हाइड कोलम्न विकल्प चुनते हैं
ठीक है हमने कर लिया
अतः फॉर्म डिजाइन सेव करते हैं और इसको जाँचते हैं
मुख्य बसे विंडो मेंMembers व्हो नीड टो रिटर्न बुक्स फॉर्म पर डबल क्लिक करके खोलते हैं
यहाँ फॉर्म है
अप या डाउन एरो की का इस्तेमाल करके मेम्बर्स से ब्राउज करें
या केवल विविध मेम्बर नेम्स पर क्लिक करके
ध्यान दीजिये नीचे सबफार्म रिफ्रेश होता है और पुस्तकों का वापस होना दर्शाता है
सबफॉर्म में कोई भी रिकॉर्ड चुनें
और एक्चुअल रिटर्न डेट फील्ड में 12711 टाइप करें और चेकडिन फील्ड को चेक करें
और Enter दबाइए
अब फार्म नेविगेशन टूलबार में रिफ्रेश आइकन पर क्लिक करके फॉर्म रिफ्रेश करते हैं
ध्यान दीजिये कि रिकॉर्ड जो हमने अभी बदला था अब यहाँ सूचीबद्ध नहीं है
जिसका मतलब है कि पुस्तक वापस हो गयी है या चेक्ड इन है
अतः यहाँ हमारा फॉर्म सबफॉर्म के साथ है
इसी के साथ हम लिबरऑफिस बेस पर सबफॉर्म्स के इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गये हैं
संक्षिप्त में हमने सीखा कि कैसे एक सबफोर्म बनाएँ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
यह प्रोजेक्ट httpspoken tutorialorg द्वारा संचालित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद